इसके आस पास हरी-भरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

एवं सीमेंट की खाली बोरी भी पड़ी हुई दिख रही है।